ये एक टाइटल मॉल है यहां पर घूमने की बहुत अच्छी जगह है यहां पे मॉल वगैरा बने हुए हैं।

शॉपिंग वॉच मोबाइल यहां पर सब मिलते हैं और कैफे भी है डोमिनोज पिज़्ज़ा का भी --

अं जैन हॉस्पिटल है जैन हॉस्पिटल यहां यहां पे बहुत बड़ा अस्पताल है।

पत्तियां भी लगी हुई हैं यहां पर बहुत ही अच्छा फूल है खुशबूदार भी है।

श्री अग्रवाल सेवा सदन है यात्री निवास हेतु उत्तम सुविधा की रातें रातों कमरे वगैरा बन बना ए हैं।

यहां बहुत सारी सब्जियों की दुकान है बहुत बड़ी मंडी है यहां पे आलू प्याज वगैरह सब यहां पर मिलते --

कहीं रखी हुई है यहां पे सबका केबिन बना हुआ है कही याने और घड़ी लगाए रखी इस बैंक में और कांच --

ये एक होटल है यहां पे बहुत सजावटी हो रखी है लाइटें भी लगी हुई है यहां पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं बाहर पांच छह मंजिल होटल है यहां पे शादी --

किरकट हाउस यह अम्बेसा ध दलाल त्रिपुरा में है ये ये बहुत बड़ा --

एक घर में ये शॉप खोल रखी है और एक बाइक बाहर खड़ी हुई लाल कलर की अपाची --

खड़ी हुई यहां पे और बहोत बड़ा घर भी--

ये डांस क्लास है यहां पे बच्चे बड़े और लड़का लड़कियां डांस सीख रहे हैं हाथ पीछे करके खड़े हुए --

इस दुकान में एन_सी_ई_आर_टी और सी_बी_एस_ई की किताब यहां मिलती है और कॉलेज की किताबे भी यहीं पर --

चाय कॉफी पानी की बोतल भी पड़ी हुई है यहां पे और कई कस्टमर आ के चाय भी पी रहे हैं यहां पे।

है ऑरेंज कलर का तंदूरी चिकन है और यहां पे कई कस्टमर भी वेट कर रहे हैं तंदूरी चिकन के लिए --

ये कप की दुकान है यहां पे डिजाइन दार कप छोटे बड़े अलग अलग डिजाइन वाले कप यहां पे--

जी स्कूल ऑफ़ कॉमर्स का है और इसके पास में यूको बैंक भी बना रखा है और फर्स्ट फ़्लोर पर कॉमर्स पी_जी स्कूल और कॉमर्स --

विद्या मंदिर उच्चमध्यमिक स्कूल है हवा सड़क सिविल लाइन पर है ये ये --

ये कंपनी है बॉक्स कार सर्विस की कंपनी है कनक ऑटोमेटिक यहां पे नई पुरानी --